और यहाँ बहोत से लोग म मछलियों को खरीद रहे है ।

और बिल्डिंग के पास में यहाँ पानी भरा हुआ है बोहोत सारा और यहाँ पर पेड़ भी है। बिल्डिंग के आस पास बोहोत सारे पेड़ हैं |

दुकान है जो जिसपर शटर लगा हुआ है और शीशे की विंडो बनी हुई है।

और इसके फर्श को अभी बहोत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और यहाँ के दरवाजे को चॉकलेटी कलर से --

इस तस्वीर में हम देख सकते है। ये एक घर की तस्वीर है। जो देखने में बोहोत ही बड़ा लग रहा है।

यहाँ हर प्रकार के फ्लावर है। ग्रीन पिंक येलो रेड हर तरह के और यहाँ पर व्हाइट लाइटिंग भी की गई है।

और इसके चारों ओर हरे-हरे पेड़ भी हैं जो बहोत सारे हैं।

और बहोत सारे छातें भी हैं। जूते-चप्पल विभिन्न प्रकार का समान यहाँ उपलब्ध है।

डेकोरेशन बहोत अच्छी की है जो बहोत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं।

एक टेबल के ऊपर एक पानी की बोतल भी रखी हुई है।

क्लास में दो बोर्ड भी लगे हुए है। ब्लैक एंड व्हाइट --

ये एक चाट की तस्वीर है। एक एक आदमी प्लेट में चाट लिए हुए है।

पास में एक पड़ी परात में बहोत सारी --

चाट है और उसी ही पे बोहोत सारे गोलगप्पे भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते है।

नदी के अंदर एक नाव भी है।